यह चित्र एक गाड़ी के शोरूम का है शोरूम का--

पेड़ भी बड़े दिखाई दे रहे हैं।

फोटो कॉपी स्पाइरल बाइंडिंग की है।

चित्र में एक व्यक्ति ने मास्क लगाया हुआ है।

एल्युमिनियम के कुछ गेट भी रखे हुए दिख रहे हैं।

दिखाई दे रहे हैं कुछ मिट्टी का ढेर भी रखा हुआ है।

नदी में कुछ लोग खड़े हुए हैं।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

हॉल का चित्र है हाल में कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है।

टेबल पर कैरम भी रखे हुए हैं।

सामने स्टेज भी बना हुआ है।

सामान के आगे रुपए की चिट भी लिखी हुई है।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

स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है।

यह चित्र एक सब्जी की दुकान का है।

है कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

टोल नाके का चित्र है। इस चित्र में एक--

पीले और लाल रंग के कवर है।

पोस्टर लगा है नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र है।